यहाँ पर एक सड़क भी हैं इस सड़क पर बहुत से गाड़ी आती-जाती हैं।

यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

हॉल है। यह हॉल काफी बड़ा है।

इस हॉल को सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है।

इस सड़क के इस पहाड़ के किनारे सड़क है।

इस पानी से बिजली भी उत्पन्न होती है यहाँ पर अनेक सारे मछली भी होती हैं ।

इस को काफी सुंदर सजाया गया है।

यहाँ पर बच्चे काफी संख्या में है।